बहुत सारे पेड़ पौधे हैं पीछे तरफ।

यहां पे कुछ पंखे भी है और कुछ बल्ब भी है।

सभी मछली के बहुत सारे सूंड दिखाई दे रहे हैं।

ऊपर में बहुत सारे बैलून और झंडिया सजायी गयी है।

स्कूल के साइड में कुछ पेड़ पौधे हैं।

पिलर के अंदर ईंटे रखी हुई हैं।

और यहां पे तीन व्यक्ति खड़े हैं।

और एक व्यक्ति जा रहा है।

सामने एक स्टील का रेलिंग दिखाई दे रहा है।

पुरानी नदी है यहां पे बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए हुए हैं।

और इसके आगे पीछे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं।

लगाए गए हैं यहां पर बहुत सारे कुर्सियां भी रखी हुई है।

हरे भरे झाड़ियों रस्ते के किनारे एक सुंदर बनती है।

उच्चाई प्रदान कर रहे है।

साइड में एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें वीर कुंवर सिंह लिखा हुआ है।

उसके ऊपर कुछ आदमी दिखाई दे रहे हैं।

पंडाल के साइड में एक घर है।

घर के ऊपर बहुत सारे आदमी खड़े हैं।

बेड के ऊपर दो तकिये रखे हुए हैं।

और पीले रंग का बक्सा भी बहुत रखा हुआ है।

बहुत सारे नोटबुक भी हैं।

और यहां पे पर्दे भी लगे हुए हैं।

डॉक्टर अधिक उपकरणों का उपयोग कर के--

गया है तथा इसका शिखर लाल रंग का है।

जिसके ऊपर में लिखा गया है।

यह एक इंस्टिट्यूट का चित्र है।

यह एक कपड़े की दुकान है।

यहां पे कुछ बॉक्स रेड कलर का है।

और लाल रंग के डिब्बे मोबाइल के हैं मोबाइल का नाम रेडमी सिक्स ए है।

यहां पे एक व्यक्ति खड़ा है और यहां पे बहुत सारे पोस्टर लगे हुए हैं।